सड़क के किनारे नोट लगा हुआ है। उस पर लाल रंग से अनमोल लिखा हुआ है।

कुछ लड़के बोल डाल रहे हैं चारों तरफ बोन्ड्रीस लगाई हुई हैं ओर --

बोर्ड लगाए हुए हैं और आदमी व्हाइट टी शर्ट मे वहाँ बोरी पर बैठा हुआ --

चार मंजिला बिल्डिंग पर बोहोत लोगों ने अपनी बालकनियो में कपड़े --

शादी के मंडक पर बहोत सुंदर सजावट की हुई है जिसमें लाल सफेद --

आदमी चश्मा पहने हुए और क्रीम रंग का स्काफ लगाए हुए दो महिलाएं साड़ी पहने --

सफेद रंग की बूटी की हुई है और लाल रंग की दीवार दिखाई दे रही है।

चारों तरफ बिल्डिंग्स है और वह तीन मंजिला इमारत है। जिसमे लाल --

उसके साथ में नीले ओर कुलर लगाया हुआ है।

बिजली के खंबे हैं। चारों तरफ हरियाली है। पत्तियों का रंग --

और टहनियों पर पीले पीले --

पंडाल में बहुत सी महिलाएं बच्चे पुरुष --

टी-शर्ट और कपड़े रक्खे हुए हैं।

उनके शीशे नीचे रखे हुए हैं। टायरस के रंग ब्लैक हैं।

भूमि पर बोहोत ही सुंदर मंदिर है और उस पर शिव की मूर्ति बनाई हुई है।

दो मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहे हैं और उन्होंने पेंट और --

कमीज़ पहनी हुई है जोकि नीले रंग की है।

टायर्स ब्लैक रंग की है जो की धरती पर गिरे हुए हैं।

सफ़ेद लाइटिंग है और आदमी की उंगलियां है जोकि क्रीम रंग की हैं और नाखून हैं।

आसमान आसमानी और बैंगनी रंग में दिखाई दे रहा है।

बहुत से लोग रंगमंच पर खड़े हुए हैं।

है और प्लास्टिक के लिफ़ाफ़ों में पीले और हरे नींबू रखे हुए हैं।

सड़क के किनारे वो दुकान में बहुत सी मछलियां रख हुई हैं।

दुकान में इमेज की मूर्ति लगाई हुई है। जिस पर लाल पीली फूलों की माला चढ़ाई हुई है।

जिसमें कांच के दरवाजे लगाए हुए हैं।

खम्बों पर लाल और सफ़ेद रंग किया हुआ है।